इस चित्र मे एक पेट्रोल पम्प दिखाई दे रहा है जिसमे कुछ मशीनें रखी हुई दिख रही है सामने एक --

इस चित्र मे एक डाक घर दिखाई दे रहा है इसकी दीवार पर कुछ लिखा हुआ भी दिख रहा है ।